लोग यहाँ पर पढ़ते हैंएजुकेशन लेते हैंसीखते हैं नई-नई चीजों के बारे में जानते हैं और पढ़ाई करने का एक डिजिटल तरीका है ये---

ये एक तस्वीर है यह एक लॉन्ड्री की तस्वीर है जहाँ पे आप कई ढेर सारी वाशिंग मशीन टाइप की दिख रही होंगी ब्लैक कलर का कबर्ड है।

यह तस्वीर एक किले की है जहां पर आपको किले का मैन गेट नजर आ रहा होगा सीने नज़र आ रहा होगे कुछ आदमी चढ़ रहे हैं कुछ लोग उतर रहे हैं लोग यहाँ पे घूमने--

बैट दिख रहें होंगे यहाँ पर बिकते हैं तो तरह-तरह के मेटेरीयल होते एडीडास का ले लीजिए एस.एस. का ले लीजिए टोन का ले लीजिए देखिये कई तरह की वैरायटी आपको मिल जाती है स्टोर रूम में ये सब लेने के लिए।

जैसा की आपको दिख रहा होगा इर्त-गीर्त बोहोत सारे पेड़ लगे हुए जो हमे नेचरल ऑक्सीजन प्रदान करते है।

इस तस्वीर में आपको एक हिरण दिख रहा होगा और देख रहे होंगे कैसे एक पीक दिख रही होगी आधी हरी आधी ऑरेंज में हिरण का मुह उसके कान हमेशा ना एसे खड़े रहते है।